पीछे बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं एक स्कैनर दिखाई दे रहा है जिस पे फ़ोन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है मोटर साइकिल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।